एक ने हाफ टी शर्ट पहनी है एक में फुल टी शर्ट पहन रखी है दोनों ने सफेद रंग के पहने हैं।

छोटे छोटे पौधे हैं उसमें सफेद रंग के फूल खिले हुए हैं।

कुछ बना हुआ है उसमें लाइटे भी जल रही है यह सीन देख के बहोत ही --

इस फोटो में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।